--है पेड़ बहुत लंबे-लंबे पेड़ है सीढ़ियां दिखाई दे रहे हैं ।

यह एक औरत का पेंटिंग है जो द दरवाजा खोलते हुए दिखाई दे रही है लकड़ी का दरवाजे है।

हरे कलर का ब्लाउज है नीले कलर का उसका घाघरा है गुलाबी दुपट्टा है दरवाजा बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं।